नमस्कार लिबर ऑफिस writer में स्थानीय भाषाओं में typing typing in local languages पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में मैं आपको लिबर ऑफिस writer के साथ kannada में text processing प्रसंस्करण से परिचित कराऊँगा
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
अब मैं बताऊँगा कि आप libreoffice में kannada typing कैसे कंफिगर कर सकते हैं आप इस पद्धति का उपयोग libreoffice में किसी भी भाषा को कंफिगर करने के लिए कर सकते हैं
package को संस्थापित करने के लिए synaptic package manager का उपयोग करें
विवरण के लिए spoken tutorial website पर उपलब्ध synaptic package manager पर tutorial को देखें
कन्फिग्रेशन चार steps में होता है
जाँचें यदि scim आपके computer में संस्थापित है
यदि नहीं तो निम्न package को चिन्हित करने के लिए और scim को संस्थापित करने के लिए synaptic package manager का उपयोग करें
tutorial को रोक दें जब तक आप यह कर रहे हैं और जब हो जाय तब रिज्यूम करें
आगे keyboard input पद्धति के रूप में scimimmodule को चुनें
text input के लिए भाषा के रूप में kannada का चुनाव करने के लिए scim कंफिगर करें
complex text लेआउट के लिए kannada का चुनाव करने के लिए libreoffice को कंफिगर करें
मैं अब इन steps का प्रदर्शन करूँगा
system administration और language support पर click करें
यदि आपको screen पर remind me later या install now मिलता है तो remind me later पर click करें
keyboard input मैथड़ system keyboard input method system में scimimmodule को चुनें
यहाँ यह पहले से ही चयनित है तो हम कुछ नहीं करेंगे
तीसरा scim को कंफिगर करने के लिए system preferences और scim input method पर click करें
अभी आप इसे screen पर नहीं देख सकते हैं लेकिन जब आप इसे अपने computer पर करेंगे तो आप इस option को देखने में सक्षम होंगे
imengine में global setup पर click करें
scim इसके द्वारा text processing में समर्थित सभी भाषाओं की सूची दिखायेगा
इसमें hindi kannada bengali gujarati tamil telugu malayalam urdu आदि सहित ज्यादा बोली जाने वाली भारतीय भाषाएँ होती हैं
हमारे tutorial के लिए hindi और kannada चयनित होनी चाहिए
अपने कंफिगरेशन को सेव करने के लिए ok पर click करें
scim के बदलावों से प्रभाव हुआ है इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें machine को पुनः आरंभ करना होगा
ऐसा करें और इस tutorial पर वापस आएँ
अब हम libreoffice में kannada processing कंफिगर करेंगे
applications office और libreoffice writer पर click करें
हम मुख्य menu में tools और options में उपoptions पर click करेंगे
आप options dialog box देखेंगे
इस box में हम language settings और फिर languages option पर click करेंगे
complex text लेआउट के लिए सक्रिय check box पर click करें यदि यह पहले से ही चुनित नहीं है
कृपया ctl ड्रॉपडाउन से kannada का चुनाव करें
default रूप से यह kannada के लिए आपकी local language setting set करेगा
ok पर click करें
हम अब kannada और अंग्रेजी में एक वाक्य type करेंगे
हम baraha पद्धति nudi पद्धति और unicode fonts का उपयोग करेंगे हम अन्ततः फाइल को सेव करेंगे
अब मैं इसे प्रदर्शित करता हूँ
खुले text document में ubuntu gnu/linux supports multiple languages with libreoffice type करें
control की को पकड़कर रखें और space bar को दबायें
screen के नीचे दायीं ओर पर एक छोटा window खुलता है
साधारण ध्वन्यात्मक पद्धति जो कि baraha पद्धति के समान है इसमें text इनपुट करने के लिए kannada knitrans को चुनें
यदि nudi keyboard लेआउट चाहते हैं kannada – kn kgp पर click करें
मैं knitrans input पद्धति का उपयोग करूँगा जो कि सरल है और इसीलिए शुरूआत के लिए आसान है
sarvajanika tantramsha अंग्रेजी में type करें
आप देखेंगे कि kannada text screen पर दिखाई दे रहा है
control की को पकड़कर रखें और space bar दबायें
window गायब हो जाता है
हम अब अंग्रेजी में type करेंगे
इस प्रकार control की plus space bar हमें अंग्रेजी और अन्य चयनित भाषा के बीच में जाने में मदद करता है
कृपया arkavathu का उपयोग करके nudi में typing सहित kannada में typing के बारे में विशेष जानकारी के लिए www publicsoftware in/kannada पर उपलब्ध kannada text processing पर आधारित document को देखें
हम केवल unicode font का उपयोग करेंगे जब भारतीय भाषाओं में typing कर रहे हों क्योंकि unicode सर्वत्र स्वीकृत font है
lohit kannada unicode font है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ
कृपया ध्यान दें कि मैंने आपको kannada text processing दिखाई है
libreoffice writer का उपयोग करके scim input पद्धति के तहत किसी भी भाषा में text type करने के लिए इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है
आखिर में नियतकार्य
kannada में तीन किताबों की सूची type करें
टाइटल्स का अंग्रेजी लिप्यंतरण प्रदान करें
मैंने यहाँ नियतकार्य पहले से ही तैयार किया हुआ है
सारांश इस tutorial में
हमने सीखा कि keyboard और भाषा की settings के लिए libreoffice और उबंटु को कैसे कंफिगर करें
हमने यह भी देखा कि विभिन्न पद्धतियों में कैसे type करें उदाहरणस्वरूप baraha और nudi
हमने देखा कि द्विभाषी document कैसे type करें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
अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hypen tutorial dot org पर संपर्क करें